और उसके पीछे एक घर है और यहां पर टीचर भी है जो आई कार्ड पहनी हुई है।

और उसके पीछे काफी सारे पेड़ हैं और फर्श--

और यहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं और डी_जे साउंड बॉक्स है और दो आदमी हैं जो सीट पे बैठे हुए हैं।

एक आदमी स्वेटर पहन के खड़ा है और नीचे रोड है।

यह एक दीवार है यहां पर लिखा हुआ है स्वच्छता अभियान।

लिखा हुआ है मैं घर पर गीले सूखे कूड़े को अलग अलग करके रखती हूँ मैं स्वच्छता वॉरियर

यह एक शादी का सीन हैं इसमें कई सारी कुर्सियां लगाई गई है कुर्सियां पर लोग बैठे हुए है।

और ब साइड साइड में लेफ्ट साइड में एक पर्दा लगा हुआ है पर्दा ऑरेंज कलर का है।

एक सामने स्कूल है बड़ा सा अ सीढ़ी है।